यहाँ गणेशजी की प्रतिमा है गणेशजी के साथ लड़के फोटो खिचवा रहे है।

और नीचे कार खड़ी हुई है और ऐ बहुत सुंदर लग रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर।

दुकाने हैं दुकानों के आगे उम्म दो गाड़ियां तीन गाड़ियां रखी हुई है इन पर छतरियाँ रखी हुई है।

यहाँ म--लाइन से मल्टी बनी हुई है सामने भी--